लाइट का रंग पीला तथा उजला है ।

दोनो गाड़ी का चक्का पानी में डूब चुका है।

दरवाजे के बगल में दो गाड़ी खड़ी है।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

होटल का दीवालदीवार का रंग लाल तथा उजला है।

ये तीन पहियों वाला गाड़ी है।

व्यक्ति ने नीले रंग के तो कुछ व्यक्ति ने सफेद रंग के वस्त्र धारन किए हुए हैं।

इमारत का रंग उजला तथा भूरा है।

कान के बाहर बहोत तरह तरह का पोस्टर लगाया हुआ है।

यह एक नदी है नदी के किनारे दो नांव है।

बहोत बड़े बड़े चट्टान भी है आसमान साफ है।

यह एक स्थान है जहां पे खेल खेला जाता है।

यहां पर हरा रंग का एक बड़ा सा बोर्ड है जिसके ऊपर बॉल रखा हुआ है जोकि लाल काला उजला है।

इस चित्र में बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

उसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र।

यह एक पहाड़ी इलाका है जहां पर बहोत सारे हरे भरे घास हैं।

चट्टानों का रंग भूरा है।

मंदिर पेड़ के नीचे है।

इस दफ्तर के दीवाल का रंग हरा तथा उजला है।

दरवाजा पे बाहर जाने का निशान लगा हुआ है जिसका रंग हरा है।

बस के ठीक बगल में दो टेम्पो खड़ी है एक टेम्पो का रंग लाल है तथा दूसरा का रंग नीला है।

जिसका रंग गुलाबी तथा पीला नीला हरा बहोत तरह के हैं।

साइकल का रंग हरा पीला लाल इत्यादि है।

सभी व्यक्ति ने धोती पहने हुए हैं।